सामने एक बिल्डिंग दिख रही है जो रंगीन कलर की है।

बनी हैं जिस पर पेड़े दिख रहे हैं ऊपर रंगीन आसमान दिख रहा है।

यहाँ एक गेट दिख रहा है जो--

की ईटें दिख रही हैं और एक पलका डला हुआ है चारो साइड दीवाल है।

ऊपर सफ़ेद आसमान दिख रहा है।

बहुत सारे पौधे लगे हैं नीचे हरी और पीली घास दिख रही है।

यहाँ एक टेंट बना हुआ है जिसमें अन्दर--

बहुत सी बुकें दिख रही हैं जो रंगीन दिख रही हैं।

बनी हैं जो कत्थई कलर की हैं जिसके अन्दर बहुत सारी बुकें --

यहाँ सड़क दिख रही है जिसका कलर ब्लैक एंड व्हाईट दिख--

लगा हुआ है जिसमें सिंह एंड संस डेयरी फ्रूट लिखा हुआ है नीचे अन्दर--

नीली और बीच में लाल चादर बिछी हुई है बहुत सारे--

खम्भे हैं जो कुछ लाइट वाले खम्भे हैं और कुछ वो में ऊपर बहुत सारे तार लगे हुए हैं ऊपर--

यहाँ एक बड़ा तालाब दिख रहा है जिसका पानी ग्रीन --

पक्षी दिख रहे हैं बीच में एक बड़ा--

एक पिलर खड़ा है नीचे बहुत सारी ईटें--

खड़े हुए हैं पीछे एक घर दिख रहा है और नीचे--

उसके तकिए भी सफ़ेद हैं पीछे दीवार ग्रे और सफ़ेद कलर की पट्टी बनी हुई है।

यहाँ एक स्टेज बना है जिसमें सामने सोफा --

सजा हुआ है सामने बहुत सारी कुर्सी लाइन से--

यहाँ एक दुकान दिख रही है जिसमें अन्दर--

यहाँ एक बिल्डिंग दिख रही है जो सफ़ेद औ--

काले कलर का गेट दिख रहा है सीढियाँ--

यहाँ एक गार्डन दिख रही है जिसमें सामने एक--

यहाँ एक पार्क दिख रहा है जिसमें बहुत सारे--

उच सरक पट्टी बनी हुई हैं नीचे हरी घास है।

मने कुछ बिल्डिंगें दिख रही हैं जिनका कलर रंगीन है और एक--

इसमें ऊपर काला पोस्टर लगा हुआ है जिसपर--

ऑन लिखा हुआ है नीचे टेबल बनी है जिसके बाहर दो आदमी--

कांच लगे हुए हैं और एक लाल--